यहाँ पर बना रहे हैं। देख सकते हैं बोहोत ही लाइन दुरी तक गयी है और बोहोत ही --

लोग बच्चे मतलब बच्चे लोग नहीं बच्चे यहाँ पर बना --

यहाँ पर बाहर में बैठा के बनाया जा रहा है।

ये घर में घुसते ही यहाँ पर एक पेड़ है । उससे थोडा बहुत राहत मिलता होगा ।

बीचों-बीच से पानी आया हुआ है। देख सकते है यहाँ पर सब बंदा फोटो खिचवा रहे है। चारो बंदा बैठे हुए है।

तो यहाँ पर सजाया गया है ऐसा ही शादी में होना चाहिये।

चार पांच यहाँ पर अंदर एक बनाया गया है।

रोड के साइड में यहाँ पे बना हुआ है रोड ।